जैसे की इस फोटो में मिडल में वी_मार्ट शॉप है जो की प्राइसलेस है बाय वन गेट वन फ्री है शॉप में--

जैसा कि इस फोटो में ये चाय की होटल दिख रही है चाय--

थोड़े कलर के भी है बहोत सारे ज्यादातर ब्लैक एंड व्हाइट है और इसके सामने--

दाल में डालने की फलियां है और लचड में किराना शब्द भी हैं और बाहर उसके--

ये कपड़ाइन की दुकान है यहां पे ऊपर एक फैन है और उसमें बहोत सा बहोत सारे डब्बों में कपड़े रखे हुए हैं राइट साइड में भी--

और एक लड़की भी है जो लड़की ग्रीन बेल्ट पहनी है और उसके पीछे एक लड़का खड़ा हुआ है जिसका कलर अ येल्लो टी-शर्ट और ब्लैक जींस पहनी है।